पीछे इसमें पेड़ नज़र आ रहे है साइड में इसके एक खम्बा दिख रहा है।

यह तस्वीर में एक सरकारी भवन दिख रहा है जो सफ़ेद रंग का है इसमें सामने कुछ पेड़ नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर में तीन बस दिख री है एक रंग एक बस लाल रंग की है पीछे बस दो नीले रंग की है उसके पीछे पेड़ नज़र आ रहा है।